अ प्लेट का रंग ब्लैक है। यहां कुछ --

केला का पेड़ लगे हुआ है।

यह स्कूल का सीन लग रहा है। यहाँ बोहोत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं।

नदी के आगे एक ठो बाउंड्री लगे हुआ है। बाउंड्री के अन्दर में बड़ा सा एक मंदिर है।

लटकाए हुए है। यहाँ मकान बनल है। एक ठो पोल लगा है।

पार्क के अंदर मे भीम राव अम्बेडकर एक अंबेडकर का एक स्टेचू लगा हुआ है।

और पानी नीला कलर का दिख रहा है।

यहाँ एक ठो रूम है।

और एक ठो बूढ़ी झींगा को दे रही है।